जो बॉक्सेस रखे हैं उनमें मोबाइल भी शो किए गए हैं।

रेड और ब्लू कलर की लाइन भी बनी हुई है।

जहां पे शेटर लगे हुए वहां बाइक है एस_बी_आई का--

दवाई की दुकान नजर आ रही है।

यह एक होटल का रूम है।

रोड पे जो की कच्चा रोड है जंगल का।

स्कूल दिखाई दे रहा है हमें सामने जो बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है।

कैफे भी नजर आ रहा है पिछली साइड जिसके बाहर एक--

पत्थर की दीवार है ऊंची-ऊंची पीछे जंगल है।

नीचे बैठने के लिए सोफा भी है।

नीले कलर के पैकेट भी दिखाई दे रहे--

और नीचे टेबल पे एक प्रिंटर नजर आ रहा है।

जिसमें ग्रिल्स वाली सीढ़ियां लगी है।

पीछे दो बोट्स भी लगे हुए हैं।

काउंटर बना हुआ है हुफ व्हाइट और रेड कलर का--

सामने गाड़ियां दिखाई दे रही है।

दीवार सी बनी है टाइल्स लगी है नीचे।

फूलों का गार्डन नजर आ रहा है।

पीछे ऑरेंज कलर के फ्लावर्स --

गेंदे के फूल बहुत सारे--

शॉपिंग मॉल दिख रहा है सामने--

ब्राउन कलर की छत पे वाइट लाइट्स है और नीले रंग की भी --

एक शेल्फ है जिसमें मोबाइल्स रखे हैं।

जंगल के बीच गांव है।

और बीच से रास्ता भी नजर आ रहा है।

चार बच्चे हैं उनमें से तीन--

बच्चों ने आर्मी ड्रेस पहनी है।

और पीछे एक पोस्टर लगा है।

सामने कुकीस दिख रहे होंगे जो डब्बे में बहुत अच्छी तरह पैक किए गए हैं।

बॉक्सेस भी रखें है और एक लड़का यहां पे--

जिसके साइडों में बहुत अच्छी ड्राइंग की गई है डिजाइन बनाया गया है।

सामने ये बहुत सी साइकिलें दिख रही है एक लड़का साइकिल पे भी बैठा है।

सामने और भी लोग खड़े हुए हैं।